और दो मंजिल लग रहा है दो मंजिल है।

कुछ मेढ़क जानवर है मेढ़क है पार्क है।

जो कि बोर्ड लाग हुआ है मिल्क भी दिख रहा है उस में--

वो लोग बाहर खड़े है लेले के जा रहे है यहाँ से सामान --

बड़े शहरो में इसलिए एक ए.सी लगी हुई है ये लोग योगा कर रहे हैं।

और प्लेटफोर्म दिख रहा है थोड़े-थोड़े लोहै का बना हुआ है।

बालाजी की मूर्ति दिख रही है और भी मूर्ति बनी हुई है सामने - सामने --

और एक जो है व्यक्ति जो सेल्फी मिरर फोटो ले रहा है।

सर पे उन्होंने कवर करा के रखा है की बाल में न गिर जाये मशीन पर काम कर रहै है फैक्ट्री के अंदर दिख रहै है।

कॉलम डल रहै है लोहै का लोहै का टीन बना हुआ हैं जो की साइड मे जीने वाले भी जिससे चड़ के ऊपर जाते है।